यह बस स्टैंड में बहुत सारे आदमी भी हैं और बहुत सारी बस भी लगी हुई हैं ।

यह अच्छी रेट पे राशन मिलता है बोहोत सारे आदमी आए हुए --

लगे हैं। यहाँ पे बोहोत सारे बालू सीमेंट गिट्टी छड़ गिराई गयी है।

यह बगान गेंदे के फूल से हम लोग पूजा करते हैं माला बनाते हैं सजावट के --

यह एक दुकान है। इस दुकान में विद्या किराना एवम जेनरल स्टोर है।